एक छोटा सा मैदान है जो की यहाँ पे बहुत लोग सर्किल क्रिकेट खेलते है और हम लोग भी यहाँ पे जाते हैं।

ये छोटा सा राशन का दुकान है जो की हम लोग राशन यही से खरीदके ले जाते हैं।